-- उसके आगे बहुत सारी गाड़ियां है जो पार्क की हुई है और इमारत है और इमारत में कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ पे बोहत सारे लोग हैं और यहाँ एक शॉप जैसे लग रहा है स्टाल जैसे आ यहाँ पे बोहत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और कुछ लेडीज वहाँ पे देख रही है।

यहाँ पर बोहोत सारी गाड़िया पार्क की हुई हैं और उसके आगे अअअ एटीएम और बोहोत सारी दुकाने हैं।

यहाँ पे एक अ आदमी बैठ हुआ है और नीचे एक अ च चटाई पे बोहोत सारी मछलियां है जो रखी हुई है और अ आदमी के पीछे ड्रम रखे हुए हैं।

यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां पार्क अ की हुई है और एक और एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं और एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर कुछ तो भी लिखा हुआ हैं।